जिसके ऊपर लाल मशीन रखी हुई ही है।

एम.आर.पी. कर के कुछ लिखा हुआ है।

और दिखाई दे रही है।

एक वाइट कलर का जालीदार गेट है।

मुझे यहाँ गार्डन दिखाई दे रहा है।

इसमें से कुछ का कलर पीला है कुछ का लाल है।

कुछ धनिया पाउडर दिखाई दे रहे हैं।

ट्रक है साइकल्स मोटर साइकल दिखाई दे रही है।

एक लकड़ी जैसा झाड़ दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर एक होटल दिखाई दे रहा है।

जो कि हरे कलर की है।

किनारो पे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

एक अंकल ने चेक्स शर्ट पहन रखा है। एक --

फॉर्चून करके कुछ कुरकुरे का पैकेट है।

मुझे यहाँ पर एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर दो लोग टेस्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे है।

मुझे यहाँ पर एक किरा किराना स्टोर दिखाई दे रहा है।

बहुत सारी चीजें टंगी हुई है एक चेयर है।

मुझे यहां पर एक नटराज स्टेशनरी दिखाई दे रही है।

यहां पर बहोत सारे पिक्चर्स बने हुए हैं।

जो के ऊपर छत बना हुआ काम कर रहा है।

पॉच में पोहा हैं।